कुछ बड़े टायर हैं कुछ छोटे टायर है एक बक्से में भी--

के साथ एक ही पड़ी है साथ में एक पत्थल है घोड़ा चारा खा रहा है।

और दो छोटे सोफे उनके अंदर एक छोटा टेबल है।

पीछे तीन बड़े सोफे हैं सामने एक टेबल है।

सामने एक एच_आर_टी हॉल है यह बहुत बड़ा पैलस है।

बाहर एक लड़की खड़ी है जिसने फ्रॉक सूट पहना है।

बेला है पानी बहुत ज्यादा है और इसके साथ ही एक--

सेट का रंग लाल है साइडों पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं पेड़ हरे भरे हैं।

पत्थर के ऊपर एक आदमी बैठा है।

कार के नीचे एक गद्दा बिछा हुआ--

एक लाल रंग का बॉक्स लगा हुआ है।

सामने दो जे_सी_बी खड़ी है। जिनका रंग पीला है टायर काले रंग के--